change password ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में आपका स्वागत है पिछले में हमने सीखा कि चेक कैसे करें यदि हमारा फार्म सब्मिट हो गया है
हमें यहाँ हमारी डेटा वेल्यू मिली है
कृपया याद रखें कि हमारे डेटाबेस के अंदर हमारे पासवर्डस एन्क्रिप्ट हैं
अतः जैसे ही ये फील्ड्स अंदर आ रहे हैं मैं उनको एक md 5 hash में एन्क्रिप्ट करूँगा
सुनिश्चित कर लें कि आपने कोष्ठक डालें हैं
मैंने जो यहाँ चिन्हांकित किया है हमारा पैरामीटर है
अतः यहाँ हमारे पास हमारे md5 एन्क्रिप्टेड पासवर्डस होंगे
हमें यह फील्ड चेक करने की आवश्यकता होगी यह देखने के लिए कि वे मौजूद हैं या नहीं
फिलहालजब हम अपना फॉर्म सब्मिट करते हैं हम देखते हैं कि वास्तव में कुछ नहीं हुआ
पहले मैं लिखूँगा check password against db और फिर हम हमारे डेटाबेस से कनेक्ट होंगे
हम इन पेजेस में कई में पहले से ही अपने डेटाबेस से जुड़े हैं जैसे कि लॉगिन पेज
आप इसको अपने एक समय के लॉगिन स्क्रिप्ट के साथ include and include connect php नामक अलग फाइल में रख सकते हैं ताकि आपको यह टाइप न करना पड़े
लेकिन हमारे ट्यूटोरियल के लिए मैं इसको बारबार टाइप करूँगा क्योंकि सीखने के लिए यह एक अच्छा तरीका है
हम यहाँ टाइप करेंगे connect = mysql_connect
और हम मेरे यूजरनेम root और पासवर्ड के साथ अपने लोकल डेटाबेस से कनेक्ट हो जायेंगे मैं अपना डेटाबेस चुनने जा रहा हूँ
और यह है phplogin जो यहाँ है यहाँ पर जाएँ और आप इसे यहाँ देख सकते हैं
हमारा टेबल users है जिसका उपयोग हम बाद में करेंगे
आगे मैं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए क्वेरी बनाऊँगा
अतः मैं टाइप करूँगा query get जो कि mysql query के समान है और यहाँ हम select password टाइप करेंगे हमें डेटाबेस users से पासवर्ड पता लगाने की आवश्यकता है
आप यहाँ देख सकते हैं यह users टेबल है
फिर हम टाइप करेंगे where username is equal to user यह हमारे यूजर का यूजर नाम धारित सेशन वेरिएबल है
अतः हम क्या कर रहे हैं कि हम इस टेबल से अपना पासवर्ड हैश चुन रहे हैं जहाँ यूजरनेम सेशननेम के समान है और यह alex के समान है
अतः यह सफल क्वेरी होनी चाहिए तथा आप अंत में कुछ एरर मैसेज टाइप कर सकते हैं or die query didnt work
आप इस एरर मैसेज के साथ कुछ कल्पनाशील हो सकते हैं और अपनी पसंद से टाइप कर सकते हैं
उसी तरह यहाँ आप लिख सकते हैं or die आप यहाँ अपना एरर मैसेज जोड़ सकते हैं लेकिन समय बचाने के लिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ
अब हम इसका उपयोग थोड़ा अलग करेंगे इससे पहले कि हम डेटा बेस में प्रत्येक रिकार्ड के माध्यम से while फंक्शन से लूप का उपयोग करें
मुझे इस पद्धति के बारे में किसी की टिप्पणी के माध्यम से सूचना मिली मैं लिखूँगा row = mysql_fetch_associative और यह query get है
हम old password db सेट करेंगे जो कि नया बेरिएबल नाम है पुराने पासवर्ड के साथ यह गलती मत करना जो सब्मिट किया गया है
डेटा बेस के अंदर हमारा पुराना पासवर्ड हमारी रो के समान होगा
याद रखें यह एक अरै की रचना करता है
अतः यह वेल्यू password है क्योंकि यहाँ हमारे डेटा बेस के अंदर यह password है आपको लेबल्स का उपयोग करने की आवश्यकता है
अतः यहाँ से हम अपने पासवर्ड्स की जाँच कर सकते हैं
अपना पुराना पासवर्ड और नया पासवर्ड चेक करना एक सरल if स्टेटमेंट है
डेटाबेस में टाइप करें if the old password is equal to the old password
यह दोनों md5 hashes हैं क्योंकि हमने उन्हें पहले एक md5 hash में परिवर्तित किया हुआ है
अतः यदि वे समान हैं तो हम कोड का ब्लॉक रन करेंगे अन्यथा हम पेज को नष्ट कर देंगे और लिखेंगे old password doesnt match!
अतः यहाँ मानते हैं कि हम प्रमाणीकरण के पहले स्तर को पार कर चुके हैं हमने डेटाबेस में पुराने पासवर्ड को पुराने पासवर्ड से चेक कर दिया है अब हमें अपने दो नये पासवर्ड्स को चेक करने की आवश्यकता है
अब आसानी से टाइप करें if new password is equal to repeat new password फिर हम कोड का ब्लॉक बना सकते हैं अन्यथा हम पेज को नष्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं new passwords dont match!
अतः यहाँ success है और फिर हम लिखेंग change password in database
अतः अब मैं क्या करूँगा कि success को एको करूँगा और मैं अपने पेज पर वापस जाऊँगा
मैं जानबूझकर अपना पासवर्ड गलत टाइप करूँगा और अतः मैं इसे टाइप करूँगा
मेरा नया पासवर्ड मैं abc टाइप करूँगा और फिर change password पर क्लिक करके हमें मेसेज मिलता है old password doesnt match!
यदि मैं abc को अपने पुराने पासवर्ड के रूप में टाइप करता हूँ जो यह है तथा 123 को नये पासवर्ड के रूप में और और बगल में क्रमरहित अक्षर हमें मिलना चाहिए oh old password doesnt match!
वापस जाएँ और कोड को चेक करें old password row password query get
यहाँ हम दोषमुक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अन्त में ब्रेक के साथ लिखते हैं echo old password db तथा एक और ब्रेक के साथ लिखते हैं echo old password
अब हम क्या कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट को फिर से रन कर सकते हैं अतः पुराना पासवर्ड abc के समान नया पासवर्ड 123 के समान और फिर क्रमरहित अक्षर लिख सकते हैं
ठीक है तो इनकी तुलना करते हैं वे दोनों समान दिख रहे हैं अतः हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ समस्या मिली है
फिर से कोड को चेक करें वर्तनी के लिए जाँच की जा रही है
ठीक है मुझे समस्या पता चल गई है यदि मैं यहाँ मेरे डेटाबेस पर वापस जाता हूँ हम देखते हैं कि मैं इस वेल्यू में स्वतः जुड़ गया था और मैंने इसके अन्त में यह स्पेस दिया था आप इसे नीले रंग में चिन्हांकित देख सकते हैं मैं इससे जल्दी ही छुटकारा पाऊँगा और मैं अपने पेज पर वापस आऊँगा
मैं हमेशा की तरह फिर से लॉगिन करूँगा और जल्दी से मेरा पासवर्ड बदल दूँगा मैं सही से अपने पुराने पासवर्ड को डालूँगा और मेरे दोनों नये पासवर्ड के लिए क्रमरहित टेक्स्ट डालूँगा
आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों नये पासवर्ड्स का मिलान नहीं हो रहा है
हमने इसे पहले से ही एको कर दिया हैअतः अब हम इसे डिलीट कर देते हैं
अतः मानते हैं कि मेरे पासवर्ड का मिलान हो रहा है मैं इस सक्सेस मेसेज को डिलीट करता हूँ
अतः इन्हें डिलीट करते हैं मैं उन्हें दोषमार्जन के लिए रखता हूँ
मैं मेरा पुराना पासवर्ड नया पासवर्ड 123 और 123 टाइप करूँगा change password पर क्लिक करूँगा और हमें success मिलता है
अतः मैं यहाँ पिछली गलती के लिए माफी माँगता हूँ
अतः इस ट्यूटोरियल के तीसरे भाग में हम यूजर के पासवर्ड को उपडेट करने के साथ जारी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सबकुछ ठीक से कार्य कर रहा है
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है आईआईटी मुम्बई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ